उसके पास बहुत सारा कचरा है और जमीन अस्त व्यस्त पड़ी है।

और लक्ष्मी माता जी की तस्वीर है और भी काफी सारे यहां पे तस्वीरे लगी हुई हैं।

हां पर दीवार के पास से सोफा पड़ा है जो बहोत ही लंबा चौड़ा है।

यहां पर ग्राउंड के अंदर बहोत सारी छोटी छोटी घास लगी हुई है।